इधर इसके आगे से ये रास्ता होके निकला है और उसमें बगल में भी बहोत सारी जगह पड़ी हुई है।